बहोत सारे आइसक्रीम दूध के पाकिट --

और यहां पे बाहेर एक दुकान लगी हुई है फाउण्डेशन --

सामने बहोत सारे कपड़ो के केरीबेगस रखे हुए है।

आजू बाजु यहा पे लकडिया की जाली मारी गयी है।

वहा पे कुड्सिया है बेठने के लिए बच्चे है।

यहा पे एक टेबल है और यहा पे एक आदमी--

माइक में स्पीच दे रहा है और यहा पे बाजु बजाने वाले है सा--

यहा पे बाजु परनिया गीरे हुए है।

और यहा पे बाजु फतरे पते गिरे हुए है।

बड़ा सा समंदर है जो कि डार्क ब्लू कलर का है।

बड़ी सी रस्ता बनाया बिसमे सिफ्ट की तरह दिख रहा है।

सड़क के उपर यहा बहोत सारे लोग--

यहा पे बड़े बड़े पाइपा है लाइट के यहा पे--

ये एक जिम है यहां पे बहोत सारे लोग जिम कर रहे हैं।

डेस्क मे बहोत सारे यहां पे मोबाइल्स कवर है पर्निया पड़े हुए यहां पे बैठने के लिए।

यहा पे बहोत सारे मशीना है जोगिंग मशीन रनिंग मशीन लटकने के लिए भी यहा--

डाला हुआ है यहा पे बहोत सारे बड़े बड़े ग्लासेस लगाये हुए है लाइटिंग भी बहोत सारी उपर यहा--

बड़ा सा घर को यहा पे बनाया जा रहा।

कारा है टूविलर गाड़िया है साइकिले यहा पे सिमेट रेती कला के माल को डाला गया।

यहा पे सलाखे है आजू बाजु घर बड़े बड़े झाडा भी है यहा पे--

जा पिलर्स उठाये गये है यहा पे शेरा के पुतले बनाये गये--

और यहा पे बाजु बहोत सारे घरा है।

लोग है झाडा है बहर साइड --

यहां पे बहोत सारे काराँ खड़े हुए हैं।

यहा पे न्यू कार्स भी है यहा पे--

बेठने के लिए चेयर्स भी है यहा पे बोर्ड लगाया गया है।

यहां पे पीछे बहोत सारे पर्दे मारे गए है स्टेज को--

सजाया गया बहोत सारे यहा पे अलग अलग कलर के--

जुलम जुला है फूलो के यहा पे हार पहने हुए पंडित जी भी है बड़े बड़े दो टोकरिया भी है स्टील के।

यहा पर ऊपर टीसर्ट महाराजा यहा पे बहोत सारे--

कम्पुटर एप्लीकेशन सेंटर का बोर्ड लगा हुआ है।

कार भी है और यहा पे लोगा भी है।

और यहा बाद वि मोबाइल का शोरूम भी है।

और यहां ऊपर एक पंडित जी चढ़े हुए त्रिशूल लगा रहे हैं।

और यहा पे वायर लम्बा सा दिख रहा है।

आजू बाजू बहोत सारे पत्ते गिरे हुए है झाडा गिर--

यहां पे एक बड़ी सी ट्रेन आ रही है आजू बाजू बहोत सारे पौधे मट्टी गिरी हुई है वहां पे स्टेशन है।

यहा पे बहोत सारे नारियलो को बेचा जाता है।

पानी पिने के लिए ये बहोत अच्छा यहा पे एक गाड़ी के उपर ये आदमी रखे हुए है नारियल को।

और यहा पे ब्लू कलर की एक बड़ी सी--

लोग है निचे मिट्टी दिख रही है लाल क्ले आदमी यहा बेठने के लिए चेयर --

यहा पे लवे के पाये भी दिख रहे है।

यहा पे बहोत सारे कारा खडे हुए--

ट्रोलिया लेने के वास्ते खडे हुए है।

ये एक यहा पे यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया --

कोको कोला के बेनर्स लगे हुए है बाजु भी बैंक है उसका स्टर बंद है।

ये एक बड़ा सा स्टेज है।

और यहा पे बहोत सारे डांस किये जा रहे है।

सामने अभोत सारे चेयर्स है और लोग बेठे हुए यहा लाइट के बहोत बड़े बड़े फोक्सस मारे गये।

आजू बाजू बहोत सारे लोग है बड़े बड़े यहा पे--

ये एक होटल या किचन की दुकान है यहा पे--

बहोत सारे चिकन दिख रहे है और उसे यहा पे कट किया जारा बड़े से एक--

और यहा पे बहोत धोया भी जा रहा है उसे और यहा पे एक बड़े से भगोने के रखा जा रहा है।

बड़े हुए डस्टबिन भी है बड़ा सा बेरल भी वहा पर रखा हुआ है।

ये एक एस_बी_आई ए_टी_ऍम है।

बड़े बड़े झाडा दिख रहे है पीछे यहा बड़ी सी--

बिल्डिंग दिख रही है ऊपर यहां आसमान दिख रहा है और यहां पे--

यहा पे फूलो की लड़ गाली गयी है उपर बहोत सारे यह पे यदि लाइट भी चालू है यहा पे--